उसके आसपास हरे-हरे कुछ पेड़ लगे हैं और सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है और उसके पास एक सड़क भी डली हुई है और सामने एक खंभा दिख रहा है।

जो कि दिखने में नीले रंग का है। ट्रैक्टर के चक्के बहोत ही बड़े और मोटे हैं और ट्रैक्टर एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। पेड़ बहोत ही हरा भरा है और ट्रैक्टर खेती करने के काम में आएगा।

यहां पर एक बहुत ही प्यारा दृश्य दिखाई दे रहा है। यहां एक नदी है और उसके आसपास घास-घास दिख रही है।

यहाँ पर पिच के अंदर स्टम्प भी गड़े हुए हैं और उन पर दो गिल्लियाँ भी रखी हुई हैं।